लगे हुए नजर आ रहे हैं और पंखे भी लगे हैं।

यहां पर हमें एक एंडलेस बाइट्स का रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

और एक आदमी भी खड़ा दिखाई दे रहा है और बाहर एक मोटरसाइकल भी खड़ी है।

उठाया हुआ नजर आ रहा है और दीवार के ऊपर पोस्टर लगे हुए हैं।

और एक लड़की पहाड़ के बीच एक पत्थर के ऊपर बैठी हुई है।

और उसके बाहर दो मूर्तियां बनी हुई है और वे मूर्तियां--

यहां पर हमें एक दुकान नजर आ रही है।

ऐस जर्नल स्टोर एंड कोका कोला --

और उसके ऊपर दो बड़े रेसिंग वाले--

और एक तरफ एक शेड के नीचे दो और गाड़ियां खड़ी की गई है।

यहां पर हमें एक जिम नजर आ रहा है।

और ये एक लड़का सामने जिम वाली मशीन के ऊपर बैठा--

और एक साइडों के ऊपर कुछ--

रंग बिरंगी बिजली वाली लडीयां लगाकर उसको सजाया गया है।

हॉस्पिटल का पोस्टर नजर आ रहा हैं और यह एक रिसेप्शन हैं।

का शोरूम नजर आ रहा है।

और उसके पास एक अंकल खड़े हैं।

एक्स_रे रूम बना है और एक आई_सी_यू बना हुआ है और उसके बाद--

लगी हुई है और कुछ छोटे पौधे लगे हैं और कुछ बड़े बड़े पौधे--

यहां पर हमें एक शोरूम नजर आ रहा है जिसके बाहर लवली ऑटो मारुति सुजुकी --

और इसके बाहर दो गाड़ियां खड़ी--

बड़ा सा बैनर लगा हुआ है।

बड़ा पुल बना नजर आ रहा है।

कुछ बतियाँ जग रहीं हैं और कुछ दूरी पर पेड़ पौधे--

और गाजर शिमला मिर्च खीरे और बैंगन--

और दीवारों के ऊपर कुछ पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं।

एक गाड़ियों का शोरूम नजर आ रहा है।

शीशे के अंदर रखी हुई हैं।

और यह दुकान पुस्तकों की दुकान है।